जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहां बहुत बड़ा गुरुद्वारा है गुरुद्वारा को लाल सफेद --

गाड़ियां लगी हुई हैं यहां पर लोग पेट्रोल डीजल डालवाने आते हैं यहां पर एक ऑटो रिक्शा भी खड़ा है।

जैसा कि में देख पा रही हूँ यह एक बहुत बड़ा कपड़ों का मॉल है यहाँ पर लड़कों के कोर्ट पैंट जीन्स --